कुछ लोग सफेद कुछ लोग काले रंग की शर्ट टी शर्ट पहने हुई --

उसी में एक खजूर का पेड़ और आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

वहीं पास वाली रैक मे फेविकोल की छोटी छोटी डिब्बियां भी रखी हुई है।

इसमें सामने की तरफ बहोत सारे पत्थर लगे हुए हैं और ऊपर पत्थरों का पहाड़ भी है।

सामने की तरफ मार्टेल आर्ट्स लिखा हुआ है।